ग्रीन कलर की लाइन बनी हुई है यहाँ पर बगल में दो बसें दिखाए दे रही हैं। इनका ऑरेंज और पीला कलर की बस है। अगल बगल पेड़ दिखाइ दे रहे हैं।

सामने एक लकड़ी का शोकेस पे एक मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पर पीछे दी दीवाल का कलर ब्लू --

ऊ और आसमानी कलर का है और यह शोकेस का कलर सफ़ेद और कत्थई कलर का है और ये मूर्ति के निचे कुछ लिखा हुआ है।

सामने एक नदी दिखाई दे रही। यहाँ पर मिट्टी दिखाई दे रही। यहाँ पर रे घां --

सामने नदी दिखाई दे रही मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर का कलर ऑरेंज कलर का है। यहाँ पर झंडा लगा हुआ है जिसमें सफेद कलर का डंडा --

यहाँ पर लोहे की जाली लगी है जो कत्थई कलार से पेंट है और पिले कलर की पट्टी --

पेड़ों का कलर हरा है और यहाँ पर कत्थई कलर की मिट्टी --

पजामा पहना हुआ है टोपी लगाया हुआ है यहाँ पर खिड़कियाँ दिख रही हैं और यहाँ पर लाल कलर का कारपेट जैसा --

पीले कलर की पट्टी लगी हुई है। यह मूर्ति का कलर काला है इसके नीचे सफ़ेद कलर का कुछ लिखा हुआ है।

यहाँ पर चद्दर का शेड बना हैयहाँ पर लोहे के पाइप दिख रहे हैयहाँ पर पेड़ दिख रहे हैंहरे कलर के यहाँ पर फर्श बना हुआ हैयहाँ पर --

यहाँ पर कुछ लोग दिखा चलते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पर आसमान --